यह एक मस्जिद है। यह मस्जिद बहुत बड़ा है।

लोग यहाँ पर दूर-दूर से किताब कॉपी खरीदने के लिए आते हैं ।

यह बिल्डिंग को बनाने में बहुत पैसे खर्च होंगे ।

लोग यहाँ पर खेलते हैं कूदते हैं ।